यहाँ एक ऊपर कवर्ड लगा है नीचे सामने तीन मिरर है तीन चेयर्स रखी है उसपे मैकआप का ब्यूटी का बहोत सारे सामाने रखा है।

यहाँ जाने के लिए पर्सी पर से जाना पड़ता है यहाँ हर अलग अलग तरीके के मेकअप और बहुत सारी चीजे होती है सब जैंट्स के लिए होती है।

यह एक समुद्र है जिसके उपर सीमेट और ईट से बना हुआ एक ब्रिज है उसके साइड मे एक लडकी खड़ी है।

यहाँ दो बिल्डिंग हैआकाश का रंग नीला है यहाँ बिजली के तार जा रहे है यह बिल्डिंग का कलर हरा है।

गुफा जैसी बनी है जो बड़े-बड़े चट्टानों के बीच मे बनी है यहाँ अंधेरा ही अंधेरा है यहाँ पत्थरों पे काई लागी हुई जो बहुत दिनों की है जिस कारण से वो फैल गई है दूर-दूर तक--

ये एक शिक्षा विभाग है जहां एक छात्रा यूनिफॉर्म पहने बाहर की तरफ आ रही है दो छात्राए अंदर खेल रही है।